क्रीम कलर की और सफ़ेद कलर की बाउंड्री है तथा नीचे की ओर दो कारे खड़े नजर आ रही है कई बाइके दिखाई दे रही है।

तथा सामने की ओर एक टिन का छप्पर है। जिसके नीचे काफी लोग खड़े रखे है तथा महिलाएं और पुरुष भी खड़े रखे है।

तिन से चार पांच आदमी व्यक्ति काम कर रहै है उनके सामने घने-घने बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहै है।